पटना को कटिहार बस पर लिखा हुआ है बलाराम कृष्णा लिखा हुआ है दिखने में बहुत अच्छा है।

ग्रिल लगा हुआ है है ताला है पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है ऊपर से तार गया है ।

यह ऑफिस जैसा लग रहा है इसका उद्घाटन अभी-अभी हुआ है बैलून गेट पे लगाया गया है यहाँ पे बहोत सारा कुर्सी रखा हुआ है पौधा भी है रोना लिखा हुआ है बैलून उजला कलर की है लाल कलर की है ।

बहोत फ़सलें हैं अच्छा लग रहा है।